और कुछ बाहर की साइड खड़े हुए हैं औड यहां पर हरा भरा घास भी है और हरे भरे--

आठ ऊनी कलर के हैं और शीशे पे

और कोई फोन भी रखे हुए हैं और कुछ पुस्तके भी रखे हुए हैं और कोई भी रखे हुए हैं।

आ ये बहोत ही अच्छी लगती है और यहां पर हर चीज लकड़ी की है और लाइटें लगी हुई है।

और बाहर का जो नजारा है बाहर भी बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है और अंदर शीशे लगे हुए हैं जो और अच्छे लग रहे--

और पंखे भी लगे हुए हैं देखो अब भी चल रहे हैं।

और कुछ मजा ले रहे है यहां पर कुछ टेबल भी रखी हुई है जो रेड कलर की है और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है जो रेड कलर की है।

और एक फ्रिजर भी रखा है जिसमें ठंडा वगैरा रखा हुआ है और इसमें लाइटें भी लगी हुई है और पंखे भी लगे हुए हैं जो चल रहे--

यहां पर देख रहे हैं बाहर का नजारा कितना खतरनाक तरके से सजाया गया है।

और यह लिखा हुआ है स्वस्थ विज्ञान विद्यालय।

जिम की मशीन भी रखी हुई है और यहां पर लोग जिम में कर रहे है।

और बाहर देख रहे है और हरियाली भी दिखाई दे रही है और एक जे_सी_बी भी दिखाई दे रही है।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

जो क्विर ने अवेदी आ चुकी है और यहा पर कुछ पानी बी रखा हुआ है।

और यहां पर मैगी भी रखी हुई है और बिस्किट भी रखे हुए हैं और रखे हुए हैं।

और कोको कोकोनट वाले बिस्कुट भी रखे हुए हैं और ब्रेड भी रखे हुए हैं बहुत--

दूसरा आदमी भी है एक लड़के के लिए जा रहा है जिसकी ब्लैक कलर की जनकी--

ये टाटा स्काई लगा डाला लाइफ जिंगा लाला।

ये एक ऑफिस है और इसमें नक्शे लगे हुए है एक भारत का है।

यह एक शॉप टाइप बाय है यहां पर नागालैंड से काफी बर्गर मिलता है।

यार यहां पर देख रहे है कि बैठी हुई है कुछ लड़के भी बैठे हुए है।

और एक बुलेट भी खड़ी हुई है ब्लैक कलर की--